मैदान में कुछ लोग खेल रहे हैं।

बड़ा हॉल है हॉल में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं बहुत सारी अलमारियां भी है बड़ा हॉल है हॉल में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं बहुत सारी अलमारियां भी है।

सामने बहुत सी इमोजी लगी हुई है।

इमारत के ऊपर की ओर कुछ लिखा हुआ है और बोर्ड टंगा है सामने एक मूर्ति बनी हुई है|

इमे एक रोड है रोड में मूर्ति बनी हुई है।

सा हाल हाल में बहुत सारी मशीन रखी हुई है। जहाँ पे बहुत--